यांका का भैर बिटिन आप तें मंदिर का झंडा अर मंदिर का उंडे-फंडे लगायां फूल पत्ता भी होल दिखेण लग्यां।

फोटो मा जी आपथे दिख्यण लग्यूं की यखमा जी एक भौत ही लम्बी रोड छा याँ का फंडै बटिन आपथे भौत सारी सरकारी क गाडी होल दिखेण लगीं।

जख का जी भैर बिटिन बहोत सारा पुतला भी छन लगायां पुतलों पर कपड़ा छर पैरायां।